यहां पे एक ट्रक खड़ी है ट्रक का कलर लाल है एक टेंपू खड़ा है।

यहां पे एक बहोत बड़ा पार्क है उस पार्क में छोटी छोटी हरी भरी हुई घास है।

उसके ऊपर एक छज्जा दिखाई दे रहा है छज्जे के ऊपर दो गमले रखे हुए हैं।

चार प्लेटें सोलर की लगी हुई हैं मकान है।

जो नीले रंग का है उसके ठीक सामने बिजली के दो पोल दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो काफी बड़ी भव्य बनी है।

सामने एक बाउंड्री दिखाई दे रही है एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत बड़ी फील्ड है जिसकी सफेद रंग की बाउंड्री खींची हुई है।

एक व्यक्ति आगे बैठा हुआ है दो व्यक्ति पीछे बैठे हुए हैं और सभी पीछे कतार से लाइन से बैठे हुए हैं।